और देखने पर अंदर बहुत सारा बालकनी दिख रहा है अलग अलग फ्लोर का।

यह एक ठो सर्विस सेंटर का फोटो है जिसमें सारा गाड़ी सर्विस हो रहा है। मतलब सारा गाड़ी रिपेयर हो रहा है।

कूलर भी है इसमें और ब्लू कलर का स्टूल भी है दो ठो।

यह एक ठो शोरूम का फोटो है जिसके बाहर बहुत सारा बाइक लगाया हुआ है लाइन से।

यह एक ठो बहुत बड़ा सा ब्रिज का फोटो है जिसके नीचे बहुत सारा पाया है।

इस फोटो में पानी भरा हुआ है एक रोड पे बहुत ज्यादा उसी में एक तो बस जा रहा है वह बस का कलर ब्लू है और येलो भी है।

एक आदमी दिख रहा है खड़ा हुआ जो मैरून कलर का स्वेत शर्ट पेहना हुआ है और पजामा पेहना हुआ है और बहोत लोग खेल रहे हैं फील्ड में।

और स्विचबोर्ड भी दिया हुआ है बगल में और ऊपर व्हाइट कलर का लाइट भी लगा हुआ है।

यह एक ठो प्रज्ञा केंद्र का फोटो है जो अभी बंद है।

दो ठो आदमी खड़े हो के बात कर रहे हैं बगल में कूलर भी है ब्लैक कलर का उसमें राजेश लिखा हुआ है।

और व्हाइट कलर का लाइट लगाया हुआ है बहुत सारा।

यह एक ठो रेलवे स्टेशन का फोटो है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म में जाने वाला सीढ़ी और ब्रिज दिख रहा है।

और ये लकड़ी में डिजाइन बना हुआ है सारे सोफा में और चेयर में।

एक बच्चा बैठ के तबला बजा रहा है वहां पे माइक भी लगा हुआ है।

बगल में एक ठो लेडिस भी हैं उनके साथ एक बच्चा भी है छोटा सा।